दाईं ओर भगवान की कुछ और तस्वीरें भी दिख रही है।

बाईं और एक काले रंग की गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

सामने पे एक नीले रंग की बस और एक सिल्वर रंग की कार भी दिखाई दे रही है।